और दो व्यक्ति खड़े हैं एक जो लड़का खड़ा है उसने ब्लैक कलर की टि-शर्ट और ब्लैक कलर का हाफ लोवर पहना हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ा सा बुक स डिपो दिख रहा है जिसमे बहुत सारी कॉपी किताब और स्टेशनरी का सामान दिखाई दे रहा है दुकान के बाहर तीन लोग खड़े हैं एक ने वाइट कुर्ता पैजामा पहना है |

यहां पर एक बड़ा-सा स्टेज दिख रहा है जोकि बहोत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है और जिसको सीरीज से सजाया गया है। ग्रीन कलर का दिख रहा है।

बाहर कुछ लोग भी खड़े हुए हैं । एक लेडीस खड़ी है एक बच्चा है और एक जेंट्स भी खड़े हैं ।

और वहाँं कुछ योगासन कर रही है एक लड़का खड़ा हुआ है और पीछे खिड़कियां भी दिखाई दे रही है और लाइट भी जल --

यहाँ पर एक बड़ी सी कालोनिया दिख रही हैं। जिस पर बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग बनी हुई है।

और नीचे ब्लैक कलर से कुछ पेंटिंग भी बनी हुई है और इसमें पूरे कांच लगे हुए हैं और इसमें रेड कलर से कुछ लिखा भी हुआ है ऐसा लग रहा है यह रात का सीन है।

यहाँ पर एक हॉस्पिटल का सीन दिख रहा है। जहाँ पर एक व्यक्ति ने पी.पी.ई कीट पहनकर कुछ सामान चेक कर रहा है।

यहां पर एक बड़ा सा कारखाना दिख रहा है जिसमें बड़ी ऊंची ऊँची मशीने लगी हुई है दो व्यक्ति खड़े हैं जिन्होंने सर पर टोपी लगाई हुई है।

यहाँ पर एक गुफा दिखाई दे रही है जो के पत्थरो से बनी हुई है और अंदर जाने का एक रास्ता भी दिख रहा है।